और गमला है गमले छोटे-छोटे पेड़ है सीढ़ियां है और पानी का पाइप भी है।

टेबल लगा हुआ है| टेबल पे पर्दा है।

गेंदा का फूल है बहुत खूबसूरत है।

अंदर मकान है दो महले का।

खम्बा है इस पे सोलर का पैनल --

गिरा हुआ है --

नहीं है एक आदमी झोला कंधे पे लेके जा --

ये होटल है| होटल में --

लाल कलर से पेन्ट है यह आगे|

पीला कलर से उधर पेन्ट है।

है| थोड़े-थोड़े पत्थर दिख रहे हैं मट्टी दिख रहा है।

पानी भर गया है और --

निकला है। सामने एक कुर्सी में रखा हुआ है।

और ए.टी.एम. मशीन भी है इसके अंदर ए.टी.एम. --

पैन्ट है और ब्लू टी शर्ट पहना हुआ है।

नट बोल्ट जोड़ रहा है। बोहोत --

और ऊपर लगा हुआ है। लाईट भी है।

पीछे भी हसना --

सुबह का टाइम है। ब्रिज है ब्रिज के नीचे सब खड़े --

झाड़ू मार रहा है साफ कर रहा है।

पॉट रखा हुआ है गुलदस्ता रखा हुआ है इसे हम बोलते हैं --